एक शार्क और काफ़ी सारी खतरनाक मछलियां भी हो --

और ये काफी बड़ा पहाड़ है। इसका कलर ऑरेंज सा हो रहा है और इस पे काले-काले धब्बे भी हो रहे हैं और इसके बाहर से रोशनी आ रही है और ये --